और बहोत सारी पेर दिखाई दे रही है।

आसपास में बहोत सारे पेर उगे हुए हैं।

आस पास छोटे छोटे पत्थर को लाइन लाइन रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे घर दिखाई दे रही है।

मुझे घर के ऊपर में एक बड़ा सा पोस्तर दिख रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर मुझे बकरी का खाना खाने वाला दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे स्कूटी दिखाई दे रही है।